यह एक खाली खेत का फोटो है। इस खाली खेत के अगल-बगल हरे-भरे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

कुछ दूर-दूर तक पेड़-पौधे खिल हुए खिले हुए हैं। इस बीच में एक ट्रैक्टर है जो कि कुछ लोड कर के आ रहे हैं।

यह फोटो एक झरने का है जिस से कि अभी पानी का फुहारे चल रहे हैं और यह किसी पार्क के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। इसके अगल बगल हरी -भरी फूल लगे हुए हैं।

और इसके गियर का कलर जो है रेड में है।

इस मंदिर को गेट के बहोत इस मंदिर के गेट बहोत ही अच्छे तरह से डेकोरेट किया गया हैसामने से अन्दर आदमी सब जा रहा है।

और यह द जो दीवार है उसे पेंट नहीं --

तीन स्कूटी तीन मोटरसाइकिल और एक स्कूटी है तथा दो साइकिल भी खड़ी हुई है। सामने एसबीआई का बैनर लगा हुआ है। नीचे उसका गेट के सामने स्वागतम लिखा --